अ जिम के अंदर का फोटो है।

सम डेजर्ट का लग रहा है जिसमें--

पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी के किसी प्रोग्राम का है।

लॉरिअल प्रोफेशनल करके डाई का बैनर भी है पांच लोग खड़े हैं।